इस तस्वीर में मछलियों को बेचा जा रहा है।

इस तस्वीर में तीन मेज दिखाई दे रही है मेज के ऊपर सामान रखा हुआ है और दीवारों पर तस्वीर टंगी हुई है।

इस तस्वीर में एक मैदान में बोहत सारी बतक और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

जिस बिल्डिंग का नाम वीआईएमएस है ठीक उसी के सामने एक रोड है और एक फुटपाथ है।

और चारो महिलाए चटाई के ऊपर योग कर रही है उनकी कमर के निचे एक रोल भी लगा हुआ है।